और घर में बहुत सारे गाड़ी भी लगाया हुआ हैं।

जंगल में बहुत सारा पत्थल है।

घर के ऊपर एक बोर्ड भी लगा हुआ है और गेट में एक आदमी खड़ा भी है।

और घर के नीचे बांस भी दिखाई दे रहा है।

यह एक बहुत ही बड़ा समुंदर है।

दुकान में सेव तरबूज अमरुद भी रखा हुआ है।

बहुत सारे पौधा भी लगाया हुआ है।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

यह एक घर है घर का रंग व्हाइट और रेड कलर से पेंट किया हुआ है।

घर के पास एक रोड भी है रोड में एक आदमी बाइक चला रहा है।

रोड में बहुत सारा टाइल्स लगा हुआ है।

दुकान का रंग व्हाइट कलर से पेंट किया हुआ है।

घर के बाहर बहुत सारे बच्चे रंगोली बना रहे हैं।

रास्ता में एक गाड़ी चल रहा है।

और एक तालाब भी दिखाई दे रहा है।

दुकान का रंग पिंक कलर से पेंट किया हुआ है।

एक खिड़की भी दिखाई दे रहा है।

पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

घर के अंदर जाने वाला एक बहुत ही बड़ा गेट भी दिखाई दे रहा है।

दुकान के अंदर बहुत सारा सामान भी रखा हुआ है।

ऊपर एक मेला भी लगा हुआ है।

आसमान में वाइट कलर के बादल दिखाई दे रहे हैं।

और एक तराजू भी रखा हुआ है प्लास्टिक का कलर हरा और रेड कलर का है।

और साइकिल भी दिखाई दे रहा है।

और एक ब्लैक कलर का ब्लैक बोर्ड भी लगाया हुआ है।